जिसके आसपास कुछ फूल व पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ एक मोड़ पर कुछ कार व रिक्शे चल रहे हैं |

यह एक स्टेडियम है जहाँ पर कुछ प्लेयर्स खड़े हुए है।

यह एक स्टेडियम --

रहा है जहां प्लेयर्स खेल सके --

यह एक झील है झील की दोनों तरफ हरियाली है और --

पेड़ खड़े हुए हैं और कुछ पेड़ गिरे हुए हैं।

यह एक सड़क है सड़क के चारो तरफ सुंदर-सुंदर वृक्ष व --

यह एक इलेक्ट्रिकल शॉप है |

यहां पर सभी प्रकार का लाइट व फिटिंग का सामान उपलब्ध है | काउंटर के बाहर वायर्स रखें --